खंड वाली अलमारियां रखी हुई है जिसमें बहुत सारा सामान कुछ अलग-अलग सामान रखा हुआ है बिकने के लिए और--

यहां पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये किसी के घर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसके--

हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और आंगन में एक आदमी बैठा हुआ है।

कलर के फूलों से बहुत ही सुंदर गुंबज के आकार में सजाया गया है और अगल-बगल पेड़ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ लोग सामने बहुत सारे लोग सामने साथ में दिख रहे हैं .

मुर्गियां रखी हुई है छोटी बड़ी सभी प्रकार की जाली सा कुछ बना हुआ है डब्बा बहुत लंबा-लंबा उसके अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी मुर्गियां चिकन रखे हुए हैं --

और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ जिसमें ओमकार डेकोर ---

लिखा हुआ है और पास ही एक छोटा सा--

बना हुआ है अलग-अलग तीन चार जगह और वहां पर सभी लोग --

यहां पर जो नजारा दिखाई दे रहा है एक जिम का नजारा दिखाई दे रहा है जहां पर जिम में --

यहां पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां पर --

मजदूर लगे हुए हैं जो बाउंड्री का काम कर रहे हैं और पास ही सीमेंट पड़ी हुई है ढेर लगी हुई है उसके पास-पास कुछ ईंटें पड़ी हुई है।

यहां पर यह किसी रेस्टोरेंट का नजारा दिख रहा है जहां पर एक कांच की टेबल पड़ी हुई है टेबल पर --

यहां पर ये किसी सेंटर का नजारा दिखाई दे रहा है जहां पर--

एक कंप्यूटर रखा हुआ है और अ एक दो लड़कियां बैठी हुई हैं एक लड़का बैठा हुआ है जहां पर ये लोग कुछ कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं और --

यहां पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है ये किसी जंगल का नजारा दिखाई दे रहा है जहां पर हरे भरे पेड़-पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं और छोटी-छोटी झाड़ियां भी--

झुकी हुई है नीचे की तरफ और नीचे हरा-भरा हरियाली दिखाई दे रहा है चट्टान में हर --